छोटी-छोटी सीशियां रखी हुई है पास उसके ऊपर--

छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए कुछ गमलों में रखे हुए हैं।

का लगा हुआ है जो अंबा के नाम से है नीचे--

आपस में बातचीत कर रहे हैं बिल्डिंग को देख रहे हैं।

रेस्टोरेंट है जिसमें काफी संख्या में लाइट जल रही है।

हॉल में काफी संख्या में लाइटें लगी हुई है आसपास कुछ फूल--

यह एक पुराना सा कमरा बना हुआ--

यह एक स्टेज है जिसके ऊपर कुछ ब स्टूडेंट --

में दीवार के अंदर कुछ सामान लगा हुआ--

रखे हुए हैं वहीं बगल में एक मल्टी बनी हुई है--